इस तस्वीर को देखकर लग रहा है यह एक ग्राम पंचायत जैसा लग रहा है जिसके आगे बोर्ड में लिखाया है मर्यादित अंबिकापुर ग्राम खेरका जिला सूरजपुर उसके जस्ट नीचे एक दरवाजा है जोकि--

इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है यह एक स्कूल है जहाँ पर बहुत सारे विधार्थी दिखाई दे रहे है। और सब के सब--

पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पर दो चार बच्चे सो रहे हैं उन लोगों की यूनिफॉर्म नीली और लाल दिखाई दे रही है के टेबल पर कॉपी और पेंसिल पड़े हैं।

इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है की यहाँ पे किसी का शादी हो रहा--

और जस्ट इसके नीचे में बहुत सारे डिजाइन किए गए है जो कि सीमेंट के है और ये सफेद रंग में पुताई की गई है और इसके बीच की रेलिंग बहुत सुंदर है इसके जस्ट ऊपर चार को ओ बना --

इस तस्वीर को देखकर लग रही है इशकुल है जो कि बहुत बड़ा है जहाँ एक सर सभी विद्यार्थी को देख रहे हैं यहाँ पर --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

इस तस्वीर को देख कर यह लगता है कि यह एक गाँव का बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति लोग आए है जहाँ पर एक व्यक्ति काला स्वेटर नीचें सफेद सफेद पजामा और नीचे चपल पहना है।

इस तस्वीर को देखकर यह लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे भेड़ हो रहे हैं इससे साफ पता चलता है यहाँ पर शादी हो रहा है और यहाँ पर स अनेक प्रकार के व्यक्ति लोग आए हैं ।

इस तस्वीर को देखकर यह चलता है की यह समुंदर है जहाँ पे बहुत से इसमें पानी जा रहा है उसके जस्ट किनारे में बहुत सारे पेड़ -पौधे जो कि बहोत लम्बे है। .

इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है यह एक प्रसिद्ध मंदिर हैजहाँ पर पुराने जमाने के बनाए गए थे यहाँ पर अनेक प्रकार के दिखाई दे रहे हैं जिस पर एक प्रकार के कलर किए गए हैं।

इस तस्वीर तस्वीर में देख कर लग रहा है।

यहाँ एक रेस्टोरेंट है जो कि बहुत बड़ा है यहां पर बहुत सारे लड़कियां खाना खाने के लिए आई हुई है जस्ट उसके ऊपर में एक पंखा चल रहा है ।